किनारे पर पेड़ पौधे है। हरी घास है। आसमान है।

लकड़ियों का ढेर रखा हुआ है कचरे की गाड़ी खड़ी है।

ऊपर लाइन से झूमर लगे हुये है लाइटे लगी हुई है पतों की लड़ियाँ लगी हुई है टेबल है।